रूम में टाइल्स लगे हुए हैं और दीवालो दीवारों का कलर सफेद है।

कुछ झाड़ियां नजर आ रहे हैं।

पीछे बहुत सारे पेड़ नजर आ रहे हैं।

चित्र को देख कर एक विवाह भवन प्रतीत होता है।

सभी इस्टूडेंट बेंच पे बैठे हुए हैं।

ये खुले मैदान का दृश्य दिख रहा है।

इमेज में दो मंजिला इमारत दिख रहा है।

पीछे एक रोड दिखाई दे रहा है।

अंदर दो व्यक्ति खड़े होकर बात करते हुए नज़र आ रहे हैं।

सामने दो बाइक खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

नीचे दीवार पर हरे और सफेद रंग के गुब्बारे लगे हुए हैं।

चित्र में एक दुकान का काउंटर दिख रहा है।

काउंटर के पीछे दीवार पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें टाइटन घड़ी और टाइटन आई प्लस का एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है।

टेबल पर सामने एक व्यंजन रखा हुआ है।

अंदर आने जाने के लिए सामने एक गेट दिखाई दे रहा है।

एक बड़ा पेड़ का टहनी नजर आ रहा है।

दुकान में एक सेल्समेन साड़ियां बेचता हुआ नजर आ रहा है।

दुकान में टेबल और कुर्सियां लगे हुए हैं।

दीवाल पर दो फ्रेम और एक टी_वी नजर--

पीछे बहुमंजिला इमारते दिख रही है।

ऊपर नीला आसमान दिख रहा है।

झील के किनारे बहुत सारे चट्टान के पत्थरों के टुकड़े नजर आ रहे हैं।

चित्र को देखकर बहुत सारे पेड़ नजर आ रहे हैं।

महिला लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई है।

दुकान के दोनों तरफ दो पंडाल के काउंटर बने हुए हैं एक गुलाबी और एक पीले रंग का।

लैपटॉप के पीछे एक मॉनिटर रखा हुआ दिख रहा है।

अपने ऊपर का छत और नीचे की जमीन दिखाई दे रहा है।

हैंगरों में घर में सजाने वाले परदे टंगे हुए हैं।

सभी पर्दे अलग अलग रंगों के और अलग अलग डिजाइनों के दिख रहे हैं।

पीछे दीवार पर बहुत सारा दराज बना हुआ है जिसमें बहुत सारे अलग अलग रंगों के कपड़े रखे हुए हैं।

सामने एक टोकरी में काले रंग के अंगूर रखें हुये हैं।

फलों को बहोत अच्छे से सजाकर और सुव्यवस्थित तरीके से रखा गया है।

एक चौड़ी सड़क दिख रही है।

नदी में बहुत सारे पक्षी तैरते हुए और उड़ते हुए नजर आ रहे हैं।